चारों ओर लोग खड़े हुए हैं यहां पास बहोत सारी--

यहां पास बहोत सारे लोग बाहर बैठे हुए--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

चारों ओर लोग खड़े हुए हैं साथ में यहां पर बहुत सारी स्कूटी और साइकिल खड़ी हुई हैं।

इस फोटो पे मुझे बहोत सारे भगवान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है साथ में यहां कुछ लोग खड़े हुए--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

डिंब्बो में सामानों को रखा गया--